बहुत सारा कचरा हुआ है। फुल उल रहा है घर भी है आदमी भी है नीला कलर का पोस्टर लगा है।

हरा भरा पेड़ पोधे है। बहुत सारे खर पतवार है। आसमान ऐ सफेद कलर का पत्थर काला काला सा है। सफ़ेद कलर का खर पतवार --